एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है कुछ टेंट हाउस दिखाई दे रहे है कुछ लोग दिखाई दे रहे है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है गाड़िया दिखाई दे रही है ।

बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

अन्दर कुछ लोग दिखाई दे रहे है डस्टबिन दिखाई दे रही है बिजली के तारे दिखाई दे रही है व लाइट दिखाई दे रही है।

बड़ा सा पंडाल दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है गाड़ियाँ दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बिजली की तारे दिखाई दे रही है।